और सभी ने अलग अलग रंग कपड़े पहने हैं डेकोरेशन में भी बहोत सारे रंगों का इस्तेमाल किया है।

इस तस्वीर में मुझे एक खुल्ला मैदान नजर आ रहा है जिस पे बच्चे खेल रहे है।

रेलिंग पर लाइट से सजाया गया है सीढ़ियों के पास कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

रंग बिरंग के छोटे बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं।

यह स्टोर रूम है यहां बहोत सारी चीजे हैं यहां एक फ्रिज रखा हुआ है।